पर कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है इसका कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है और पर्दो का कलर व्हाइट गोल्डन और पिंक दिखाई दे रहा है।

कुछ पोस्टर भी दिखाई दे रहे है। जिनका कलर ब्लू व्हाइट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे है और--

ऊपर आसमान का कलर ब्ल्यु दिखाई दे रहा है और कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिनका कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है यहाँ पर काही सारे--

यहा पर एक हॉल दिखाई दे रहा है की दीवारों का कलर ऑरेंज ग्रीन व्हाइट दिखाई दे रहा है यहा पर कई सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे है।

यह पर एक रूम दिखाई दे रहा है जिस की दीवारों का कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है और व्हाइट कलर की ए.सी. दिखाई दे रही है यहाँ।

पर कुछ दिवारे दिखाई दे रही है। जिनका कलर ऑरेंज ग्रीन पर्पल और ग्रे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कई सारे बच्चे दिखाई दे रहे है।

कई सारे फर्निचर दिखाई दे रहे है जिनका कलर ब्लैक व्हाइट दिखाई दे रहा है यहा पर कई सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और --

यहा पर कई सारे गमले दिखाई दे रहे है जिनका कलर ऑरेंज और ब्लू ग्रीन दिखाई दे रहा है। यहा पर कई सारा खेलने का सामान दिखाई दे--